यहां पे ए_के फिटनेस जिम का सेलिब्रेशन हो रहा है फस्ट सेलिब्रेशन है यहां पे बहोत सारे मेडल रखे हुए हैं टेबल पे--

और गेट भी है जिसमें ग्रिल लगा हुआ है यहां पे उम् वाइट कलर का टिकट का टिकट बुकिंग कडयालय है।

वो ईंट का वो गेट है और इधर दोनों तरफ बैठने वाला है और इधर पेड़ भी बहोत सारे हैं उसके पीछे बिल्डिंग --

यहां पे बच्चे लोग कराटा सिख रहे जो बच वो बच्चे लोग ने व्हाइट कलर का टी शर्ट और बलैक कलर का पेंट पेहने हुए है बॉयज --

यहां पे बगल में एक झोपड़ी है और उसमें को क्या बोलते हैं जनरेटर है।

एलसीडी कैमरा बंपर शीट कवर म्यूजिक सिस्टम ये सब इस पे लिखा हुआ है।

यह ऑरेंज और वाइट कलर का पेट्रोल पंप है इधर किस कोई चीज़ का बैग का वह पीछे का साइड दिख रहा है वहां पे छत पे एक।

ये एक हॉस्पिटल का पिक्चर है यहां पे एक वो कंपाउंडर खड़े हैं।

लेडीज अ वो हैं गु गुड्डा है उसमें साड़ी पहनाए हुए हैं।

उधर बहुत सारे चेयर रखे हुए हैं वाइट कलर का मैट्रेस बिछाया हुआ है बैठने के लिए और ऊपर में सेलिंग फैन है।

ऊपर में एक लाइट जल रहा हैऔर इसमें बहुत सारे सामान दिख रहे हैं उम बहुत।

और यहाँ वहाँ पे एक कुर्सी लगा हुआ है बगल में खिड़की है और गेट है और एक और खिड़की --

ये एक बहुत बड़ा हाईवे है इस पे गाड़ी चल रही है।

ये एक नदी है बहोत बड़ा ही नदी है जिसमें बहोत सारे कमल के फूल खिले हैं।

और कुछ हाथ में लिए हुए हैं उड़ाने वाला जो धुआं जैसा निकल रहा है।

यहां पे एक मेडिकल शॉप है जिस पे डॉक्टर एस_के गुप्ता लिखा हुआ है यहां पे बहोत सारे--

उधर एक ट्रैक्टर है जिसमें थ्रेशर का डाला लगा हुआ है।

जहाँ पे हाईवे है जो बहुत ही लंबा है और यहाँ पे बगल-बगल से वो है रेलिंग लगा हुआ है।

और एक उसमें गाड़ी चल रहा है और बगल-बगल से बहुत सारे पेड़ है हरे भरे दिख रहे हैं।

ये एक नर्सरी है जिसमें बहुत सारे पेड़-पौधे हैं इसका नाम गोल्डन नर्सरी है।

लड़कियां रंग बिरंगे कपड़े पहनी हुई है बहुत ही सुंदर लग रहा है नजारा।

ये यहां पे दो दो गेट दिख रहे हैं और इधर क्लाश का वो गेट दिख रहा है।

ये फल का स्टॉल है यहां पे आम है सेब है अनार है और केला भी है और नीचे संतरा है।